xcos: scilab connected object simulator पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
xcos डायनैमिकल यानि सक्रीय सिस्टम की मॉडलिंग और सिम्युलेशन के लिए साईलैब पैकेज है इसमें continuous सतत और discreteअसतत दोनों सिस्टम्स होते हैं
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे: xcos क्या होता है palette क्या होता है xcos में ब्लॉक डायग्राम्स बनाना
ब्लॉक्स के पैरामीटर्स यानि मापदंड सेट करना सिम्युलेशन पैरामीटर्स सेट करना बने हुए ब्लॉक डायग्राम्स को सिम्युलेट करना
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपके सिस्टम पर साईलैब संस्थापित होना चाहिए
प्रदर्शन के लिए मैं उबन्टु लिनक्स 1204 और साईलैब वर्जन 533 उपयोग कर रही हूँ
अपने कंप्यूटर पर साईलैब कंसोल विंडो खोलें
applications पर जाएँ और xcos चुनें या अपने साईलैब कंसोल विंडो पर xcos टाइप करके एंटर दबाएँ
ऐसा करके दो विंडोज़ खुलेंगी दो विंडोज़ palette browser और untitledxcos विंडो हैं
palette browser में आपको विभिन्न प्रकार के ब्लॉक्स मिलेंगे जैसे commonly used blocks
continuous time system blocks discrete time systems blocks और अन्य
दूसरी विंडो untitledxcos ग्रिड्स के साथ खाली है
अब हम step input के साथ first order system को सिम्युलेट करेंगे
शुरू करने के लिए मैं continuous time system palette से transfer function block चुनूँगी
इस ब्लॉक को untitledxcos विंडो में लाएँ
sources palette में अपेक्षित सोर्स चुनें मैं नीचे जाऊँगी और step function block उपयोग करुँगी
मैं इसे transfer function block के पहले लाकर रखूँगी
उसी प्रकार आउटपुट cscope block उपयोग करके प्रदर्शित होता है जो sinks palette में मौजूद है
cscope block transfer function block के बाद रखा जाता है
cscope में लाल इनपुट पोर्ट दिखाता है कि यह ब्लॉक एक event driven ब्लॉक है
इसे निष्पादन के लिए एक event इनपुट की ज़रुरत है
event generator block event handling palette में मौजूद है
इस ब्लॉक का नाम clock underscore c है
इस ब्लॉक को cscope ब्लॉक के ऊपर लाकर रखें
हमने सिम्युलेशन करने के लिए सभी आवश्यक ब्लॉक्स को संगृहीत कर लिया है
अब ब्लॉक्स को एकसाथ जोड़ते हैं
step function block के आउटपुट पोर्ट को चुनें और इसे transfer function block के इनपुट पोर्ट से जोड़ें
ध्यान दें कि चयनित इनपुट पोर्ट हरे रंग में हाईलाइट होता है
उसी प्रकार प्रदर्शित की तरह शेष ब्लॉक्स को जोड़ें
अब हम प्रत्येक ब्लॉक के पैरामीटर्स सेट करेंगे
पहले step block पर जाएँ और इस पर डबल क्लिक करें
step time initial value और final value दिखाते हुए एक पॉपअप विंडो खुलती है
step time वो समय है जिस पर step change होगा हम इसे 1 रखेंगे जोकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है
initial value step function की प्रारंभिक आउटपुट वैल्यू है
हम इसे 0 रखेंगे जोकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है
final value step time बीतने के बाद step function का आउटपुट है हम इसे 2 करेंगे
ok पर click करें
किसी अन्य ब्लॉक को कॉन्फ़िगर करने के लिए समान प्रक्रिया का अनुसरण करें
transfer function block के लिए निम्न कॉन्फ़िग्रेशन आवश्यक है laplace domain में numerator वैल्यू प्रविष्ट की जानी है
हम इसे 1 रखेंगे जोकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है
laplace domain में denominator वैल्यू प्रविष्ट करनी है हम इसे 2 asteric s plus 1 करेंगे ok पर क्लिक करें
निम्न पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए cscope block पर डबल क्लिक करें
प्लॉट होने वाले वेरिएबल की वैल्यू की रेंज के आधार पर ymin और ymax की वैल्यू सेट होनी चाहिए
ymin की वैल्यू को 0 सेट करें
चूँकि मैंने step input 2 दिया है ग्राफ़ पर आउटपुट दिखाने के लिए मुझे ymax को कुछ अधिक वैल्यू देनी चाहिए
हम इसे 3 करेंगे
refresh period की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को याद रखें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 30 है
अन्य पैरामीटर्स को हम वही रहने देंगे ok पर क्लिक करें
मेन्यू बार में simulation पर जाएँ और setup पर क्लिक करें
एक पॉपअप विंडो खुलती है
हम final integration time की वैल्यू बदलेंगे final integration time निश्चित करता है कि सिम्युलेशन कब तक रन करेगा
cscope block के refresh period की वैल्यू को याद रखें
मैं final integration time की वैल्यू को cscope block के refresh period की वैल्यू के बराबर रखूँगी
अतः मैं इसे 30 करुँगी
अन्य पैरामीटर्स को अपरिवर्तित रहने दें ok पर क्लिक करें
उपयुक्त फाइल नाम के साथ control s दबाकर फाइल को सेव करें मैं इसे firstorderxcos से सेव करुँगी
सिम्युलेशन शुरू करने के लिए xcos विंडो के मेन्यू बार में मौजूद start बटन पर क्लिक करें
फर्स्ट ऑर्डर transfer function का step response दिखाते हुए एक ग्राफ़िक विंडो खुलेगी
हम इस प्लॉट को इमेज फाइल की तरह सेव कर सकते हैं
ग्राफ़ को सेव करने के लिए file मेन्यू पर जाएँ और export to विकल्प पर क्लिक करें
मैं इसे firstorderpng नाम दूँगी और ok पर क्लिक करुँगी
कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह सेव करने के लिए चुने ये बदले जा सकते हैं
उदाहरण के लिए clock underscore c block में वो period यानि sampling period और initial time सेट किया जा सकता है
cscope block में output window number
position size buffer size graph color आदि भी सेट किये जा सकते हैं
यहाँ विडियो रोकें और विडियो के साथ दिए गए प्रश्न को हल करें
05 के damping ratio और angular frequency इक्वल टू 1 के साथ second order transfer function को सिमुलेट करें
आउटपुट ग्राफ का रंग बदलने का प्रयास करें
पहले प्रश्न का उपयोग करके सिंगल प्लॉट विंडो में step input और output प्लॉट करें
इसे सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा: palette browser उपयोग करके xcos simulation डायग्राम्स बनाना
सिम्युलेशन आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक कॉन्फ़िगर करना
सिम्युलेशन पैरामीटर्स सेट करना आउटपुट प्लॉट सेव करना
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रॉजेक्ट को सारांशित करता है अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रॉजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रॉजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रॉजेक्ट का हिस्सा है यह भारत सरकार के एम एच आर डी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
आशा है यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी था आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद